'' मेम बगेरा भी खड़ी हुई है मेम उनको सिखा रही है मेम के लिए चेयर मेज वगेरा भी रखी है। ''

सरस्वती जी की पिक्चर दिख रही है गेंदे के फूलों से सजावट हो रही है।

एक लड़का उनके चरण स्पर्श कर रहा है और फोटो खिंचवा रहा है उनके साथ में।